सारा घर दिखाई दे रहा है सफेद और रेड कलर का है।

फेंसिंग दिखाई पड़ रहा है जो दीवार सा बनाया गया है जो रेड और वाइट कलर का है।

बहुत सारे कुर्सी दिखाई दे रहे हैं ब्लैक और ब्राउन कलर का।

त दिखाई दे रहा है।

प्लास्टिक दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है।

ब्राऊन कलर का बिस्तर भी दिखाई दे रहा है पीछे में।

एक पाइप दिखाई दे रहा है सफेद कलर का जिसमें फ्लैग टंगा के रखा हुआ है।

यहां हमें दो बत्तख दिखाई दे रहा है।

एक पाइप दिखाई दे रहा है येलो कलर का और बहुत सारा पेड़ भी दिखाई पड़ रहा है।

दिखाई दे रहे हैं ब्राऊन कलर का।

बहुत सारा ईटा दिखाई दे रहा है ब्राऊन कलर में।

घर में लिखा है ब्लू और सफेद कलर से द एट्टिन ग्रैंड रेस्टोरेंट ।

इसमें बहुत सारा बैग दिखाई पड़ रहा हैं जो ब्लैक ब्राऊन और सफेद कलर का है।

कुछ सारा पे भी दिखाई पड़ रहा है।

क्या दिखाई दे रहा है सफेद कलर का बाइक और स्कूटी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का।

की दिखाई दे रहा है जो व्हाइट और ब्लू कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

दिखाई दे रहा है सफेद कलर का।

दिखाई दे रहा है सफेद कलर का।

बहुत सारे घर दिखाई पड़ रहा है सफेद कलर का।

लोहा भी दिखाई दे रहा है सफेद कलर का।

लाइट भी दिखाई पड़ रहा है।

पोल दिखाई पर रहा है सफेद कलर का।